काफी अच्छा लड़का है सुंदर है। पीछे मन --

ये काफी बढ़ियाँ पीछे दृश्य है। होंडा की एजेंसी है।

ये पीछे घर है यहाँ वो टाइल्स हैं शायद यहाँ फोटो है लाल कलर की कार लगी हुई है।

उस में पीछे कैंटीन टाइप कुछ बनाया गया है। बगल में हरा-भरा पेड़ है।

और मकान भी देखने में बहोत खूबसूरत समझ आ रहा है। आगे किसी चीज का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा --

ये बिरयानी सेंटर है। यहाँ लाइट वगेरा लगा हुआ है।

देखने में भी काफी सुंदर है।

काफी बड़ा सा मंदिल दिख रहा है।